लिबर ऑफिस माथ पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्युटोरियल में हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स कैसे लिखें
और एक विशिष्ट कैरेक्टर पर इक्वेशंस अलाइन करना
इसके लिए चलिए सबसे पहले उदाहरण राईटर डॉक्युमेंट जिसे हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाया था mathexample1ओडीटी पिछले सारे फ़ॉर्मूले उदाहरण पर ध्यान दीजिये जिन्हें हमने माथ का इस्तेमाल करके लिखा था
अब चलिए डॉक्युमेंट के अंतिम पेज तक स्क्रोल करते हैं और एक नये पेज पर जाने के लिए Ctrl Enter दबाइए
अब चलिए मैथ ओपन करते हैं इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें फिर ऑब्जेक्ट और फिर फॉर्मुला
माथ के पास एक मैट्रिक्स और उसके एलीमेंट्स की रोव्ज़ और कॉलम्स को दर्शाने के लिए अलग मार्क अप है
मेरे पास उदाहरण पहले से ही लिखे हुए हैं जिससे की समय बच सके
मैं इन्हें कॉपी और पेस्ट करूँगा
अब हम सीखेंगे कि कैसे 2 बाय 3 मैट्रिक्स लिखें
इस मैट्रिक्स के पास 2 रोव्ज़ और 3 कॉलम्स है
हम मार्कअप मैट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे और उसके सारे एलीमेंट्स को फोर्मुला एडिटर विंडो में कर्ली कोष्ठकों के अंदर करेंगे
ध्यान दीजिये कि एक रो में एलीमेंट्स एक हैश चिह्न से अलग किये गये हैं
और रोव्ज़ दो हैश चिह्नों से अलग किये गये हैं
मैट्रिक्स को ब्रैकेट्स के अंदर रखने के लिए कोष्ठक का इस्तेमाल करिये
अब ध्यान दीजिये की ब्रैकेट्स छोटे हैं और मैट्रिक्स के सारे एलीमेंट्स को पूरी तरह से कवर नहीं कर पा रहे हैं
यह प्रत्येक एलीमेंट के आकार के बराबर हैं और इसलिए मैट्रिक्स के आकर के लिए स्केलेबल नहीं है
इसको हल करने के लिए हम लेफ्ट और राइट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं
इसका मतलब ब्रैकेट्स को स्केलेबल बनाने के लिए प्रारंभिक कोष्टक से ठीक पहले लेफ्ट और समाप्ति कोष्ठक के बाद राइट चलिए मैं अगला उदाहरण कॉपी और पेस्ट करता हूँ
अतः एक 4 बाय1 मैट्रिक्स जैसी स्क्रीन पर है वैसी दिखेगी
राईटर ग्रे बॉक्स में स्केलेबल ब्रैकेट्स पर ध्यान दें
मैट्रिक्स के लिए मार्कअप जैसा स्क्रीन पर प्रदर्शित है
यहाँ हम पैरेंथेसिस के बजाय स्क्वेर कोष्ठक भी इस्तेमाल कर सकते हैं
अतः मैट्रिक्स मार्क अप का इस्तेमाल करके हम किसी भी आकार के मैट्रिसेस लिख सकते हैं
अब चलिए मैट्रिक्स जोड़ने के लिए एक उदाहरण लिखते हैं
चलिए फोर्मुला एडिटर विंडो में हम नई लाइन पर चलते हैं
हम Enter बटन को दो बार दबाकर दो रिक्त लाइन्स जोड़ सकते हैं
सबसे पहले चलिए दो उदाहरण 2 बाय 3 मैट्रिसेस अगल बगल लिखते हैं जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया है
अगला चलिए योग दर्शाने के लिए इन दोनों के बीच में एक प्लस का चिह्न डालते हैं
यह करने के लिए हम केवल राईटर ग्रे बॉक्स में इन दो मैट्रिसेस के बीच में खाली जगह पर क्लिक करते हैं
ध्यान दीजिये कि कर्सर फोर्मुला एडिटर विंडो में यहाँ दो मैट्रिक्स मार्क अप्स के लगभग बीच में रखा गया है
इन दो मैट्रिसेस के बीच में प्लस लिखिए
अतः तो यह है प्लस चिह्न
अगला चलिए अंत में लंबी खाली जगह के साथ इक्वल टो चिह्न जोड़ते हैं
और फिर दांयी तरफ तीसरी मैट्रिक्स है जो जोड़ दर्शा रही है
ध्यान दीजिये अपने उदाहरण में हमने ग्रीक कैरेक्टर्स इस्तेमाल किये हैं
अतः यह दो मैट्रिसेस के जोड़ का उत्तर है
चलिए अपना कार्य सेव करते हैं
अगला चलिए एक मैट्रिक्स को एक संख्या से गुणा करने वाला उदाहरण देखते हैं
हम एक 2 बाय 3 मैट्रिक्स लिखेंगे और उसे 4 से गुणा करेंगे
हम पहले लिखेंगे 4 टाइम्स फिर मैट्रिक्स
चलिए मैं मैट्रिक्स कॉपी करता हूँ और उसको फेव में पेस्ट करता हूँ
फिर चलिए हम अंत में लम्बे खाली जगह के साथ इक्वल टो चिह्न लिखते हैं
उसके बाद मैट्रिक्स गुणनफल
मैं मैट्रिक्स गुणनफल के लिए मार्कअप कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ
अतः यह एक 2 बाय 3 मैट्रिक्स को एक संख्या से गुणा करने का गुणनफल है
अब फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करके और फोंट्स फोंट साइज एलिग्नमेंट या स्पेसिंग चुनकर हम मैट्रिसेस को फॉर्मेट कर सकते हैं
उदाहरणस्वरुप चलिए स्पेसिंग चुनते हैं
दायीं ओर कैटेगरी ड्रॉपडाउन में मैट्रिसेस चुनते हैं
और लाइन स्पेसिंग को बदल कर 20 प्रतिशत कर दीजिये और कोलम्न स्पेसिंग को 50 प्रतिशत कर दीजिये
ओक पर क्लिक करिये
ध्यान दीजिये की कैसे मैट्रिसेस और उसके एलीमेंट्स ठीक तरह से दूर फैल गये हैं
चलिए फाइल और सेव पर क्लिक करके अब अपना कार्य सेव करते हैं
अब मैट्रिसेस को दो या तीन इक्वेशंस लिखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उन्हें एक विशिष्ट कैरेक्टर की तरफ अलाइन कर सकते हैं
उदाहरणस्वरुप हम सिमल्टेनियस इक्वेशंस लिख सकते हैं और उन्हें इक्वल टो कैरेक्टर की तरफ अलाइन कर सकते हैं
चलिए अब एक सेट सिमल्टेनियस इक्वेशंस का लिखते हैं जैसा की स्क्रीन पर दर्शाया गया है
ध्यान दीजिये की वे इक्वल टो कैरेक्टर की तरफ पूर्णतः अलाइन नहीं है
अतः यहाँ हम उन्हें अलाइन करने के लिए मैट्रिक्स मार्कअप का इस्तेमाल कर सकते हैं
हम इक्वेशन के प्रत्येक भाग को अलग कर सकते हैं और भागों को मैट्रिक्स के एलीमेंट्स की तरह मान सकते हैं
यहाँ 2एक्स एक भाग हैy एक भाग है इक्वल टो कैरेक्टर एक भाग है और इत्यादि
enter दो बार दबाइए
मार्कअप को कॉपी और पेस्ट करिये
और इस प्रकार से नया मार्कअप स्क्रीन पर दिख रहा है
यहाँ हमने मैट्रिक्स मार्कअप इस्तेमाल किया इक्वेशन के प्रत्येक भाग को एक एलीमेंट की तरह माना और उनको चिह्नों से अलग किया
हमने दो इक्वेशंस को अलग करने के लिए दो हैश चिह्नों का इस्तेमाल किया
अतः यह पूर्णतः अलाइन किए इक्वेशंस का सेट है
चलिए इक्वेशंस का एक और सेट लिखते हैं
यहाँ चलिए मानते हैं कि हमारे पास इक्वल टो कैरेक्टर के दायीं और बायीं तरफ बराबर भाग नहीं है
स्क्रीन पर इक्वेशंस पर ध्यान दें और यह इक्वल टो चिह्न की तरफ अलाइन नहीं है
चलिए इन्हें अलाइन करने के लिए पुनः मार्कअप लिखते हैं
enter दो बार दबाइए
मैं मार्कअप को कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ
अतः यहाँ हमने भागों को इक्वल टो चिह्न के दायीं और बायीं तरफ अलाइन करने के लिए अलिग्न र और अलिग्न ल का इस्तेमाल किया
और यहाँ अच्छे तरह से अलाइन हुए इक्वेशंस का सेट है
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है एक 2एक्स3 मैट्रिक्स को 3एक्स1 मैट्रिक्स से गुणा करने के स्टेप्स को लिखिए
फोंट्स साइजेस और स्पेसिंग को बदलने के लिए फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करिये
तीन इक्वेशंस का एक सेट लिखिए
इक्वेशंस को इक्वल टो चिह्न कि तरफ अलाइन करिये
अब हम लिबर ऑफिस माथ मैट्रिक्स और एलिग्निंग इक्वेशंस पर इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं
संक्षेप में हमने निम्न विषय सीखे एक मैट्रिक्स लिखना और एक विशिष्ट चिह्न की तरफ इक्वेशंस को अलाइन करना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
यह प्रोजेक्ट httpspoken tutorialorg द्वारा संचालित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद